विमल दो ओ_के भैया और बताओ क्या दूं--

इस इमेज के अंदर एक गोरिल्ला दिखाया गया है गोरिल्ला के सामने पानी है।